एक स्कूल दिखाई दे रहा है और जिसमे बहोत सारी ब्रेन्चेस रखी हुई हैं और ब्रेन्चेस के ऊपर --

लिए हुए दिखाई दे रहा है। रोड में एक कार दिखाई दे रही है और बाजुू से बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं और ए सी का आउटडोर लगा हुआ--

सीट लगी हुई हैं। सभी सीटें खादी हुई दिखाई दे रही हैं। ब्लू रंग--

एक टेकटर पार्ट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अ बोरियों को बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। लाल रंग की लिप्स्टिक लगाए हुए है।

बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है और हॉल के बाहर बड़े-बड़े कांच दिखाई दे रहे हैं। ऊपर--